यहां पर मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है जो बहोत सारे बैग है जो दीवार में टंगे हुए हैं।

जो वाइट कलर का है और माला पहना हुआ है जो गोद में है वो सिंगल माला पहना हुआ जो लाल और पीले रंग का है।

पीछे एक बरासा दरवाजा है जो शीशे का हैं और छोटीसी रोज है सीरी है जो काले रंग की है।

यहां पर मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है जो बड़ा सा सामान है जो डब्बा रखा गया है जैसे पीले रंग का डब्बा है बुरे रंग का डब्बा है ब्लू रंग का डब्बा है।

और गुलदस्ता है जो गुलाबी रंग के फूलों का है नीचे कारपेट है।